जिसमें जिसके नीचे दो ब्लू बकेट है लाल मग है यहां मिरर शिशा है और नीचे काला डिक्की जैसा कुछ है।

ये एक बड़ा सा रूम है जहां आदमी लोग--

उसके बाद उधर ब्लू कलर का कुछ खेलने वाला भी देख रह है उसके बाद ग्रीन कलर --

वहां बल्ब लगाने वाला भी है ओर उसके बाद यहां में बहुत सारा--

बहुत ही सुंदर नजारा दिख रही है मुझे आ बो अ बहोत बरे बरे पहाड़ है वहां पे बादल से--

उधर एक लड़की आ फेस को छुपा के देख रहे हैं उसके ऊपर में ब्लैक कलर से कुछ है उसमें लोरियल लिखा हुआ है।

जी यहां बहुत ही खूबसूरत नजारा देख रहे हैं बहुत सारा पहाड़ है।

पिक्चर ब्लू कलर का कुछ डिक रहे उधर में और लोहा लाल कलर का बहुत सारा है ऊपर में वो लगाया हुआ है।

यह एक मेडिसिन रूम है ब्लू वाइट्स कलर मेडिसिंस बॉक्सेस है एक।

यहां पर मुझे बहुत ही खूबसूरत नजारा दिख रही है।

बहते हुए नदिया बहुत बड़ा दिख रही है।

मुझे बहुत ही खूबसूरत नजारा दिख रही है।

सामने एक रेड कलर का बोर्ड चिपकाया हुआ जिस पे एक फोटो भी चिपकाया हुआ है ऊपर ब्लू कलर --

साइड में दुकान भी है एक लड़की फ़ोन पर बात कर रहा है वायर्स भी दिखाई दे रहा हैं और खम्बा भी दिखाई दे रहा है अंदर में--

उसके बाद यहां में हां बहुत कुछ खंभा है उसके बाद ये--

यहां दो बड़े बड़े पेड़ है उसके साइड साइड बहुत सारा पेड़ है दो पेड़ के पीछे--

दुकान है जिसमें बहुत सारा सामान है सेवन कार्टूंस एक आदमी बेहतर है दो फ्रेंड्स बहुत--

नीचे में बहोत यल्लो कलर का ऊं कुछ है --

मुझे यहां बहोत शांत और सुंदर नजारा देख रहे हैं।

देहां धूप दे रहा है साथ में ग्रीनीतीश है बादल वाइट है और आसमान है ब्लू --

व्हाइट के ऊपर में रख रहे हैं उसके बाद यहां नीचे में टाइल्स है उधर एक आदमी है जिसने--

एक ऑफिस है जिसमें खिरकियां दिख रही है पर्दा व्हाइट पर्दा से लगाते हुए ऊपर लाइट चमक रही है ऊपर का सीलिंग व्हाइट है नीचे टाइल्स है द रेड चेयर्स है।

बाहर यह है पेड़ है ग्रीन से मकई का--

यहां पर बहुत सारा बच्चा लोग देख रहे हैं जिसमें उन्होंने अं घर ही शूज लिया है और वो लोग--